यहाँ पर एक दो जने खड़े हुए है उसके सामने सफेद कलर के दो मंजिल का मकान भी बना हुआ--

हैं और यहां का बहुत वातावरण अच्छा नजर आ रहा हैं।

एक सुंदर नर्सरी है यहां पर पेड़ पौधे पत्ते वगैरा लगे हुए हैं और अच्छे --

ये एक ट्रैक्टर यहां पे खड़ा हुआ है वो खेती करने के लिए जा रहा है।

उसमें हरे रंग का पेड़ बना रखा है।

रेड कलर की टी शर्ट और वाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई है।